साइड में कुछ पोधे नजर आ रहें हैं जो सूखे हुएं हैं।

--कुछ बकरी वाइट कलर की है कुछ बकरी ब्राउन कलर की है सामने बड़े बड़े पेड़ भी नजर आ रहे है।

सामने एक दुकान नज़र आ रही है दुकान के ऊपर एक बहोत बड़ा बैनर लगा हुआ है जिस--

नीचे भी एक छोटा बैनर नज़र आ रहा है जिस पर ओम--

कुछ लाइटे जल रही है नीचे टाइल्स लगी हुई है टाइल्स का कलर सफ़ेद है।

--कुछ कपड़े रेल के इंजन के ऊपर टंगे हुए है रेल के इंजन का कलर रेड है। उपर आसमान नजर आ रहा है।

--साइड में कुछ छोटे छोटे मकान नजर आ रहे है सामने एक पहाड़ी नजर आ रही है आसमान--

कुछ डिजाईन्स भी बने हुए है नीचे ब्लैक कलर की टाइल्स लगी हुई है।

औरते खड़ी हुईं हैं औरतों ने वाइट क्लर की साड़ी पहनी हुईं हैं बीच में --

एक बिल्डिंग नजर आ रही है बिल्डिंग के उपर बजाज एलियांज लिखा हुआ है|

लड़के का रिफ्लेकशन दिख रहा है कुछ लोग भी नजर आ रहै है|

सामने बहुत सारी जिम की मशीने नज़र आ रही है मशीनों का कलर ब्लैक वह ब्राउन है।